एक बेड लगा हुआ है बेड का ऊपरी बेडसीट वाइट कलर की है।

जो बहुत डैमेज हैं उसके बगल में बहुत सारे पार्ट पुर्जा खोल के रखे गए हैं।

बहुत सारी औरतें भी बैठी हुई हैं और आस पास के क्षेत्र में व्हाइट कलर के कपड़ा का यूज़ कर के एक पंडाल बनाया गया है जगह जगह पर।

इसके आस पाश के क्षेत्र बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं आसामान साफ सुथरा दिखाया गया है एक बिजली का खंभा भी लगाया गया है।

इस मैदान के चारों ओर बाड़ा लगाया गया है काटिला तार लगाई गई है इसमें दो व्यक्ति दिखाए गए हैं ।

अन्दर में एक लाइट जली हुई है और आसपास के क्षेत्र में भी लाइटिंग लगाई गई है।

आसपास का क्षेद्र बहुत ही साफ सुथरा दिखाई गया है।

इस फोटो में बहुत सारे तारामची को दिखाया गया है जो कि गोल गोल घूम रहा है।

यहां एक दुकान है जिसमें बहुत सारी सामान रखी गई हैं।

फोटो में एक रोड को दिखाया गया है। रोड के चारों तरफ दोनों साइड में बालू की टीन गिरी हुई है और आसपास का क्षेत्र में कूड़ा करकट ज्यादातर है।

आस पास के क्षेत्र में पेड़ पौधें भी हैं और आस पास का क्षेत्र बहुत ही साफ सुथरा दिखाया गया है।

वह व्यक्ति जींस और वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है एक जूता पहना हुआ है।

इस फोटो मे एक कमरा को दिखाया गया है कमरा में बहुत सारे आलू की बोरियां रखी गई हैं ।